और यहाँ पर यह सभी क्या है यह कोई मार्केट है और जो देखे सामने लिखा है उर्दू में हाजीपुर तो यह हाजीपुर नाम से कुछ है बना हुआ काफी बड़ा है।